करते हैं और इसका पूजन करते हैं। ये हमारे जीवन में इनका बहुत ही उपयोग है और ये इनसे अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं लोग यह।

ये एक कॉस्मेटिक का सामान होता है जो हमारे जीवन में चेहरा धुलने के कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है जो हमारे जीवन में एक नई चमक पैदा करता है और इसमें जीवन के लिए एक हिस्सा होता है जो --

का इस्तमाल करते हैं और यहां आते हैं और यहां टेनिस का खेल खेलते हैं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रेहता है और हमारे जीवन में बोहोत ही लाभदायक हो --

का उपयोग करते हैं और ये हमारे जीवन को एक स्वस्थ समृद्ध और लाभप्रद बनाता है जो हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है।

ये एक रंगोली है। ये घरों के इस्तेमाल में इसका प्रयोग किया जाता है। जो महिलाएं बच्चियां इसका प्रयोग करती है जिसमें घर के सुंदरता को शोभा बढ़ाने में इसका प्रयोग होता है और ये बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है जो हमारे जीवन का एक हिस्सा है।

है और इसमें और इसमें टावर नेटवर्क पकड़ने के उपयोग में इसका इस्तेमाल किया जाता है जो फोन का इस्तमाल इससे द्वारा बहोत ही --